इसमें ऊपर पीले कलर का बोर्ड में लिखा है सुरभि डेरी --

नारियल दुकान हो चुकी है --

यहाँ राम-लक्ष्मण बने हुए हैं यह देखने में बहोत --

व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए --

जंगल जो है दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है पत्ता दिखाई दे रहे है दिखने में बहोत अच्छा लग रहा है की झूला रखा हुआ है।

आह इ पेट्रोल पंप की फोटो है पेट्रोल पंप हैं।

इस इमेज में हम लोगों को --

पीछे जो है कचरा है वो दिखाई दे रहा है देखने में बहोत अच्छा लग रहा है की चारों तरफ भट्टे-वट्टे रखे हुए हैं |

इस इमेज में हम लोगों को एक ट्रक दिखाई दे रही है सामने बिल्डिंग लगी हुई दिखाई दे रही है जिसमें --

देखने में बहोत अच्छा लग रहा है ऊपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा हैं ।

ऊपर हमको पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे है स्टार लगे हुए दिखाई दे रहे है देखने में बहोत --

इस इमेज में हम लोगों को एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा हैं ।

--एक दीवाल है जीसमे येलो कलर क्रीम कलर का पेंट की गई दीवाल पे ये देखने में बहोत अच्छी दीवाल दिखाई दे रही है।

इसमें एक काँच टूटा हुआ है यह कबाड़ खाने की जगह है ऊपर ग्रिल लगी हुई है।

दस-बारह इस इमेज में खंबे लगे हुए दिखाई दे रहे है बिजली की तार दिखाई दे रहे है।

टाइल दिखाई दे रहे है टायरों में हवा निकली हुई है और देखने में बहोत अच्छी कार नई दिखाई दे रही है जैसी कार दिखाई दे रही हैं ।

इसमें से अंगूर बहुत प्रकार --

ये एक गार्डन दिखाई दे रहा है ऊपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है देखने में बोहत अच्छा लग रहा हैं ।

इस इमेज में हम लोगों को एक गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं ।

जिसमे क्रीम कलर का पेंट किया हुआ दीवालो में देखने में दीवाल बहुत अच्छी लग रही है चारो तरफ हरियाली-हरियाली दिखाई दे रही है |

दिखाई दे रहा है इसमें दो गिट्टी दिखाई दे रही है ओ --